घर में बोर्ड भी लगाया हुआ है जो सफेद कलर का है।

बहुत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।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

कॉलेज में बहुत सारा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।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

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

रोड के बगल में एक बाइक लगाया हुआ है।

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा कपड़ा भी टांगा हुआ है।

बिल्डिंग में कुछ डिजाइन करकर लिखा हुआ है।

यह एक दुकान है।

बहुत सारा मोबाइल का खोपड़ी भी रखा हुआ है।

ऑफिस का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

गेट के ऊपर केंद्रीय विद्यालय लातेहार लिखा हुआ है।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

काउंटर में बहुत सारा मिठाई रखा हुआ है।

दुकान में बहुत सारा काउंटर भी लगाया हुआ है।

झंडा भी लगाया हुआ है।

कुर्सी का कलर लाल रंग का है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है।

पुल में बहुत सारा तार घिंचा हुआ है।

दुकान में लाइट जल रहा है जो सफेद रंग का है।

लोहा में बहुत सारा ब्लू रंग से पेंट किया हुआ है।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

बोर्ड भी लगाया हुआ है जो सफेद कलर का है।

दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है।

मूर्ति में बहुत सारा फूल टांगा हुआ है।

बहुत सारा गमला में पौधा भी लगाया हुआ है।

दीवाल का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

मस्जिद का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

दुकान में बहुत सारा ताला टांगा हुआ है।

बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

घर में बहुत सारा पिलर गाढ़ा हुआ है।